रास्ता है जो रास्ते में आने जाने का रास्ता बना हुआ है और कुछ कारे मार्शल खड़ी हुई है रिक्शा चला रहे है कुछ लोग पैदल चल रहे हैं अगल-बगल भी मकाने बनी हुई हैं और दुकाने भी हैं।

जो मकानों का ऐ-- मकान बन रहे हैं अर व् और उसमे पुरे बांस के डंडे लगे हुए हैं।

और अगल-बगल हरे-भरे पेड़ पौधे भी हैं। बादल नीले सफ़ेद काले है।

और ये बादल नीला और सफ़ेद है।

और एक आदमी खड़ा हुआ है। अगल-बगल भी मैदान है जिसमें हरे घाँव् जमे हुए अग हरे-भरे पेड़-पौधे हैं बादल सफ़ेद हैं।

और ब डैम पे बना हुआ है जो उसके ऊपर एक लड़क दो लड़की खड़ी हुइ हैं।

सभी लोग खड़े हूए है दुकाने हैं अगल-बगल सभी लोग खड़े हैं जा रहे हैं आ रहे हैं और बादल काल काला है और चंदा चंदा दिख रहा है।